इन बच्चों की ड्रेस का कलर लाल है।

में कुछ कुर्सियां रखी हुई है।

एक नाव जो सामने है वो पीले कलर की है और उस पे एक टायर टंगा रखा है।

और लोहे की एंगल बनी हुई हैं।

कुछ बैठने के लिए प्रस्थान है। गेट है।

यह एक दुकान है। इस दुकान के अंदर कुछ किताब रखी हुई हैं।

कुछ आदमी है कुछ आदमी वर्कआउट कर रहे हैं।

और दीवार पे पीला कलर हो रखा है।